जिसके बाहर लोहे का दरवाजा दिखता है और पार्क में कुछ घास और बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

किसी बैंक के ओफ़िस् का है बैंक का नाम बैंक ऑफ़ बारोडा लिखा हुआ है और एक आदमी जो कि नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ है जो कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रहा ।